यहां पर मुझे एक बहोत बड़ी लैब दिखाई दे रही है।

पीछे बहुत सी लाइट नजर आ रही हैं।

इन्होंने नीले कले नीले कलर के कपड़े पहने हुए --

यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा--

इसके साथ में ही एक बैंच लगा हुआ है।

और यहां बहुत सी दुकानें लगी हुई हैं।

यहां पर बहुत से कुर्सिया टेबल रखे हुए हैं।

और इस लैब के दीवारो का कलर सफेद दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक घना जंगल दिखाई दे रहा है।

और आसमान भी रेड नज़र आ रहा --

और नीचे की साइड व रेड कलर दिखाई दे रहा है।

एक घर दूर दिखाई दे रहा है।

कुछ बिल्डिंग तैयार हो रही है और कुछ बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है।

जो कि हरा भरा दिखाई दे रहा है।

जोकि एक लकड़ी से बनाई हुई है।

इस चेयर के अंदर बहोत बहोत खूबसूरत डिजाइन बने हुए दिखाई दे रहे है जो कि हाथो से बनाए हुए लग रहे है।

बहुत सी सब्जियां दिखाई दे रही हैं।

और भी बहुत सारी सब्जियां दिखाई दे रही हैं।

जहां से बेडरूम को बहुत सारी--

और यहां पर लाइट्स भी दिखाई दे रही है।

बेड के ऊपर एक कंबल उलझी हुई दिखाई दे रही है।

व्हाईट कलर और छत रेड कलर में दिखाई दे रही है।

जिनमें से ब्लू कलर येलो कलर रेड कलर ब्लैक कलर और भी बहोत सारे गिटार दिखाई दे रहे हैं।

इस रिंग यह रिंग बद के ऊपर रखी गई है।

बेबी फ्रॉक नजर आ रहे हैं।

और यहां से एक व्यक्ति चला चल रहा है।

यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा खेत दिखाई दे रहा--

यहां पर मुझे एक टेबल दिखाई दे रहा है।

और साथ में व्यक्ति बैठे हुए भी--

किसका कलर व्हाइट है और थोड़ा थोड़ा--

ने एक ही वाइट रेस में--

और पीछे ऊपर पंखा भी दिखाई--

जो कि खाने की चीजें दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा होटल दिखाई दे रहा है।

हाथों से बनाई हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां पर मुझे एक बहोत बड़ा हाईवे रोड दिखाई दे रहा हैं।

और इसके पीछे नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक बहुत बड़ा बेडरूम दिखाई दे रहा है।